मंच का पीछे का हिस्सा काफी सुन्दर दिखाई दे रहा है जिसमे पुरी तरीके से फूल और लाइटो से सजावट है।

सामने खाली मैदान है पीछे की तरफ काफी सारे पेड़ लगे हुए दिखाई दे रहे है कुछ पेड़ बड़े है तो कुछ छोटे है ।